आसमान भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लाइट्स भी जलाया गया है।

जिसमे स्नूकर खेलने के लिए रखा गया है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे अनार दिखाई दे रहा है।

दरवाजा के सामने बहुत सारे फ्लावर पॉट भी रखा गया है।

रेस्टोरेंट के बाहर दो फ्लावर पॉट्स रखे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक कार वाश का दुकान दिखाई दे रहा है।

पीछे घास भी रखा हुआ है।

औरते ने साड़ी पहना हुआ है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

नीचे फ्लोर में टाइल्स बिछाया गया है।

पेड़ पौधे भी उगे हुए है।

सामने में बहोत सारी कुर्सियां भी रखा हुआ है।

साइड में एक पोल भी टंगाया हुआ है।

दोनों के हाथ में माइक थमा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा कमरा दिख रहा है।

नीचे फ्लोर में कारपेट बिछाया गया है।

लाइट्स भी जल के हैं।